नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ हमें एक फुटकर मार्किट दिखाई दे रहा है मार्किट में कुछ लोग हमें कुछ सामन बेचते हुए--

दुकान के अंदर हमें कुछ और भी सामान दिखाई दे रहा है।

अंगूर आम मोसम्बी आदि दिखाई दे रहे है।

ऊपर नीला आसमान सा दिखाई दिय रहा है मस्जिद के प--

यहाँ हमें एक जेट विमान खड़ा हुआ दिखाई दे रह है जो की एक हाई-हवाई पट्टी पर खड़ा हुआ है।

यहाँ हमें रॉयल एनफील्ड का शोरूम दिखाई दे रहा है।

आदि दिखाई दे रही है जो की बहुत ही सुन्दर लग रही है।

यहाँ हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

यहाँ हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की साइकिल से जा रहा है।

सामने हमें एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहै है।

शादी में हमें दूल्हा-दुलहन भी दिखाई दे रहै है।

झूमर दिखाई दे रहै है लइटिगो की सुंदरता दिखाई दे रही है।

टेबल्स दिखाई दे रही है नीचे संगमर दिखाई दे रहा है ऊपर लाइटिंग उटिंग की सुंदरता दिखाई दे रही है।

अ य एरोप्लेन दिखाई दे रहा है जो की रनवे पे खड़ा हुआ है।

झील के बाजु में हमें एक दीवाल --

और दिखाई दे रही है जोकि व्हाइट कलर में हैं।

ब्लैक कलर की एक हमें कुर्सी दिखाई दे रही है।

आजु-बाजु में हमें एक हमें कुछ हरे-भरे--

यहाँ हमें एक शॉपिंग मॉल दिखाए दे रहा हैं।

इस शॉपिंग मॉल में हमें छोटे - छोटे बहुत से काउंटर दिखाई --

यहाँ हमें एक सूंदर सी झाकी दिखाई दे रही है।

झॉकी के पीछे हमें हरे - भरे पेड़ - पौधे दिखाई दे रहै है।

मार्किट में हमें कुछ सामान दिखाई दे रहा हैजोकि कैरट में रखा हुआ हैं ।

ये बैठा हुआ है ऊपर हमें टीन का सेड दिखाई दे रहा है।

--सइस्ताम दिखाई दे रहा है आजु-बाजु हरे-भरे पेड़-पौधे दिखाए दे रहे है।